कुछ बच्चे हाथ में पेपर लिए हुए आ रहे हैं।

यहां पर सामने भी काफी फ्लैट्स नजर आ रहे जो की सफेद रंग के हैं।

इस चित्र में एक गाड़ी नजर आ रही है गाड़ी का बोनेट खुला हुआ है वही एक आदमी गाड़ी के वाइपर --

फ्रंट डेस्क के नीचे हरे रंग की एक पट्टी लगी हुई है।

यहां पे स्नैक्स एंड कॉफी लिखा हुआ है।

इसके अंदर पाइप लगी हुई है राइट साइड में पीले रंग की गुलाबी रंग की और नीली रंग की कुछ टब रखे हुए हैं।

मी पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे है।

यहां पे एक चलने के लिए फ्लाईओवर भी बना हुआ है।

हाथ में बैग टांगे हुए नजर आ रहा है।

इसके साथ में एक पीले रंग का डस्टबिन भी रखा हुआ है। यहां पर काफी हरे भरे भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर दो पहिया वाहन भी खड़े हैं जिसमें एक्टिवा मोटरसाइकल और साइकल भी नजर आ रही है।

यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं और नीले रंग का एक झंडा भी नजर आ रहा है।

संतरी रंग के झंडे भी यहां पर लहराते हुए नज़र आ रहे हैं।

राइट साइड में गणेश जी की मूर्ति नज़र आ रही है वही लेफ्ट हैंड साइड में एक भगवान की मूर्ति नज़र आ रही है।

इन अनार को पैकिंग के लिए नीचे गद्दे भी बिछाए हुए हैं गद्दे के साथ में कुछ--

पीस द ओरिजिनल का बोर्ड नजर आ रहा है।

यहां पर ऊपर लाल कलर का बोर्ड नजर आ रहा है।

लग्जरी ड्राइव्स की एक मॉल नजर आ रही है। उसके साथ में दो लाल कलर की गाड़ी भी नजर आ रही है।

यहां पर शीशे की एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

इसकी लाल कलर की टेल लाइट भी नजर आ रही है।